जैसे की देख सकते है हमारे सामने प्लेट है वाइट रंग की उसके ऊपर पराठा रखी हुई है एक टेबल पे रखी हुई है